मंदिर के ऊपर एक तार जाते हुए दिखाई दे रही है। सामने बहुत सारी शैडो भी दिखाई दे रही है और जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसमें से एक ट्रेन नजर आ रही है सामने पड़ी हुई।